यह मैट फुटबॉल खेलने के काम आता है।

और इस झील में ऐसा लग रहा है जैसे बारिश भी आ रही हो।

येह तस्वीर किसी पार्क की लग रही है।

यह तस्वीर एक हॉस्पिटल की दिखाई दे रही है।

यहां पर दो लाल साड़ी पहने औरत बैठी हुई हैं।

यह तस्वीर मोंटे केरलो की हैं जहां पर अ येलो उसमें हॉट स्टॉपर लिखा हुआ हैं।

और यहां पर लाल पीले सफेद रंग के झंडे में लटके हुए हैं।

यह कोई मशीन दिखाई दे रही है।

यहां तक प्रतीत होता है यह ओयो की दिख रही है।

ये कुछ छोटा सा ईंट का चट्टा भी दिखाई दे रहा है।

हरे रंग के पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी एक औरत को हाथ पकड़ कर ऊपर खींच रहा है।

यह किसी घर को दिखाता है।

गुलाबी रंग का गुलदस्ता रखा हुआ है।

पीछे एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है।

ये सफेद रंग के छोटे टेबल पर रखे हुए हैं।